सर्जुबल डेंटल कॉलेज माता हरा देबी डेंटल हॉस्पिटल और जोगेंद्र मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल मूर्ति इस्पेस न अ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है।

पेड़ है टेंपू लगा हुआ है बहुत सारा आदमी है जो की ठेला पा लगा का सब्जी-उबजी बेचता है ठेला पे लगा के बहुत-सारा आदमी जाता है एयरटेल थैंक्स है।